यह एक बुक की दुकान है जिसका नाम है मिथला बुक सेंटर ।

यु.पी. में पड़ता है। यह कॉलेज काफी बड़ा है।

यहाँ पर बोहोत ही बड़े बोर्ड पर लिखा हुआ है राजकीय जिला पुस्तकालय।

यहाँ पर बोहोत से छोटे-छोटे बच्चे बैठ कर क्राफ्टिंग कर रहे हैं। सभी बच्चे लाइन से क़तार पे बै --

और सलून के बाहर एक स्कूटी और एक बुलेट खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।

वर्किंग वर्कआउट नहीं कर रहा है केवल और केवल एक ही लड़का है जो मिरर पे अपना फोटो खींच रहा है।

फ्राइज़ मोमोज़ चाऊमीन रोल बर्गर आ मंचूरियन इत्यादि।

यह एक ब्यूटी पार्लर हैं और यहाँ पर रिसेप --

और यहाँ टेबल पर कुछ मैंगज़ीन भी रखे हुए हैं और अंदर की तरफ एक आदमी है।

टैचु बना हुआ है। उस हाथी ने अपने सूंड़ पर एक म् --